दो खिड़कियां हैं उसके बगल में कपड़ा का दुकान है।

एक वाइट कलर की गाड़ियां और ठीक गाड़ियां के अगर हम ऊपर देखें तो ध्यान से--

जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक पारस करके होटल है ये पांच फ्लोर का होटल है।

और ठीक अगर हम पीछे की ओर देखें डार्क घर के--

और एक जींस पहना हुआ है और ठीक उसके साथ एक महिला खड़ी है जो वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जींस पहनी है।

और ठीक अगर हम उसके ऊपर देखें तो विज्ञान ज्वेलर्स हैं।

और दो लड़के एक लड़का चश्मा पहने हुए ठीक एक लड़का चिक-चिक कलर की शर्ट पहने हुए ठीक उसके साइड में एक व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का जीन्स पहने हुए एक लड़का --

और एक स्काई ब्लू करल के एक साड़ी पहनी हुई एक लड़की दिख रही है और ठीक उसके --

यहां पे आधार कार्ड लाना मैन्डेटरी है और ठीक अगर हम आगे की ओर देख रहे हैं एक लेडिज को बाहर जाते हुए पिंक सूट में देख रहे हैं दो व्यक्ति खड़ा हैं जो नीला कलर का टी शर्ट --

और एक वाइट कलर का शर्ट और दोनों ब्लैक जींस और एक बैग लिए हुए खड़े हैं।

जहां पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं मकना काजू किशमिश चुहाड़ा --

और यहां पत्ते पतले से कच्ची भी रास्ते में दिख रही हैं।

और ठीक अगर हम पीछे साइड देख रहे हैं ब्लू कलर का लाइट हमें नजर आ रहा है।

और ठीक अगर हम पीछे की ओर देखें तो दो बॉक्स हैं कार्डबोर्ड के जो बॉक्स बने हुए हैं।

उसके अगर फिर राइट साइड में अगर हम ध्यान से देखें ब्लैक कलर का एक--

और एक व्यक्ति है जो नीचे की ओर देख रहा है और सारे वर्कर --

अगर हम ऊपर की ओर देखें तो वहां पे एक बोट नजर आ रहा है हमें।